और बोहोत सारे पेड़ है कचरा पड़ा हुआ है गेट है ब्लैक कलर का--

ये केम्पस दिख रहा है इस केम्पस में बहोत सारे पेड़ दिख रहे है फोरवीलर्स है टू विल्लर्स है और लाइट है और ग्रे कलर की कार है स्कूटी है।

जवान भी है साइकिल रिक्शा है टू व्हीलर है--

और यहां पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट नर्सरी सेक्टर फिफ्टी थ्री ।

या एक रूम है और रूम में दो लोग बेठे हुए है पानी का मटका दिख रहा है बोटल दिख रही है पानी की जार दिख रहा है और एक मिरर दिख रहा है मिरर में एक लड़का दिख रहा है और टॉवेल है।

ये एक गार्डन है गार्डन में लोग वोकिंग कर रहे है बड़े बड़े पेड़ है घास है और यहा पे लाइट है एक पेड़ के निचे साईकल रुकी हुई है।

दो फोर व्हीलर रुकी हुई है एक वाइट है एक ब्लैक कलर की है।

रास्ता है रास्ते से लोग आ जा रहे हैं।

यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है लड़के लडकिया खड़ी हुई है एक फोरविलर है यहाँ पे लिखा हुआ है निउट्रलस टेस्टी द ओरिजनल ऐसे लिखा हुआ है।

यह फूलों की दुकान है यहां पे अलग अलग प्रकार के फूल है यहां पे खंभे गढ़े हुए है औरेंज कलर येलो कलर व्हाइट कलर की फूल दिख रहे हैं और यहां पे ले भी बहुत लोग रहे हैं।

यह एक पत्रे का शेड दिख रहा है यहाॅं पे अटके हुए पॉट्स है इसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ नीचे रखे हुए हैं नर्सरी है शायद छोटे छोटे कलरफुल फूल भी दिख रहे।

ये एक रास्ता है नास्ते के उस पार बहत ा हुआ पानी जेसे की नदी है और बादल बोहोत दिख रहा है साईकल है साईकल के पास आदमी खड़ा है उसकी साईकल पे बोत सारे बनाना लगे हुए है।

ये एक पार्क है बच्चो को खेलने के लिए खिलोने है आगे सर्गुंडी है मिट्टी है पेड़ है पोधे है गार्डन है बेटने के लिए बेंच है।

ये भेस का गोटा है यहा पे दो भेसे है एक छोटी भेस है एक बड़ी भेस है उनके सामने ना उनका खाने का चारा पड़ा हुआ है मिट्टी है पतरास दिखरे खिड़किया है।

इन पर बहुत सारे फूलों से अ मालों से सजाया हुआ है पिंक वाइट कलर की माला लगी हुई है मोर पंख है।

लाइब्ररी है लाइब्ररी में एक आदमी खड़ा हुआ है कबट में बहोत सारी बुक्स रखी हुई है इस आदमी के हाथ में भी एक बुक्स रखी हुई है इस आदमी के हाथ में वोच पेनी हुई है।

कोंफेरेंस होल है यहा होल में बहोत सारी भीड़ है स्टेज पर एक आदमी खड़ा हुआ है स्पेच दे रहा है चेर है बोत सारे लोग बेठे हुए है फेन है लाइट है।

ये कुछ फंक्शन चलरा है इस फंक्शन में ना हा मतलब ये ये इसु क़िस्त का फंक्शन है चर्च है आका चर्च के सिम्बोल लाग रहे है या यापे ना चेयर रखे हुए है लेडीज है जेन्स भी है इनके गले में माला पेनी हुई--

यहा पे मेला लगा हुआ है हरियर खेत्र सोनापुर मेला प्रणाम असा लिखा हुआ है मेले में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है बलून दिख रहे है चार्ट की ठेला लगा हुआ है।

पेड़ दिख रहे है बादल दिख रहे है येलो कलर के स्टेचू है।

जहा पे फटाके फोड़े जा रहे है जो दिवाली में हम फोड़ते हैना जा नारियल जेसे जाड होते है राउंड फेड़ने वाला होता है टमटम दिख रहा है गेट दिख रहा है।

हां एक पहाड़ी है पहाड़ी में बेहता हुआ पानी दिख रहा है पेड़ दिख रहे है पहाड़ पर बोहोत सारे हरे हरे जाड़ी दिख रही है बादल है।

बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर की साइड पे जाड लगे हुए है सोके जाड है गेट है वाइट कलर का बिल्डिंग रास्ते पर फॉरविलर खड़ी हुई है।

यहा पे कुछ पूजा चल रही है यहा पेना बहोत सारे ऐसे आप लोटे रखे है लोटे पे नारल रखा हुआ है उसकी पूजा की गई है फुला से सजाया हुआ है कर्टन दिख रहा है एक ओरत एक बच्चा खड़ा हुआ है।